एक रिक्शा दिख रहा है बाइक दिख रही है।

हेलमेट दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं।

वे कराटे के पोर्शन में है और यहां छत दिख रही है छत में पंखे दिख रहे हैं।

गिलास दिख रहे हैं पानी की बोटल दिख रही है और पेप्सी की बोटल दिख रही है।

यहां पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

और बहोत सारे पंखे भी दिख रहे हैं।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

बड़े घर दिखाई दे रहे हैं

यहां पर बहोत सारे घर दिखाई दे रहे--

पानी की टंकी भी दिख रही है बिजली की तारे भी दिख रही है।

और यहां पर बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स दिखाई दे रही है।